गाड़ी का अगला हिस्सा निकाला हुआ है वहीँ पीछे की ओर भी कुछ सिलिंडर नज़र आ रहे हैं ऊपर की और आसमान का रंग सफ़ेद है।

यह चित्र एक खेल के मैदान का नज़र आ है जहाँ नीचे की ओर कुछ जगह मिट्टी तो कुछ जगह हरी भरी घास लगी नजर आ रही हैं।

यह चित्र दुकान का नज़र आ रहा है जहां भूरे रंग के बक्सों में काफी सामान रखा हुआ नजर आ रहा हैं।

यह चित्र एक फल का नजर आ रहा है| जिसका नाम अंगूर है| अंगूर का रंग काला नज़र आ रहा है| वह अंगूर के नीचे अखबार बिछा हुआ नजर आ रहा है।

यह चित्र एक जगह का नजर आ रहा है जहां पर एक लाल कपड़े के ऊपर कुछ छोटी वह बड़ी मछलियां रखी हुई नजर आ रही है।

सड़क के दोनों और कुछ छोटे व बड़े वृक्ष लगे नज़र आ रहे हैं जिनका रंग हरा है| सामने की और एक व्यक्ति जाता हुआ नज़र आ रहा है।

यह चित्र एक कार्यालय का नज़र आ रहा है जहां पर काले रंग की कुर्सियों का प्रयोग बैठने के लिये किया नज़र आ रहा हैं।